और लाल पीले और सब कलर के फूल भी हैं।

एक बोहोत बड़ी बोहोत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग भी हैं और उसमे ग्रिल भी लगी है और उधर --

शरट भी हैं पैंट भी जूते की दुकान सब कुछ अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी दुकान भी है।